इस तस्वीर के अंदर हम एक दुकान देख सकते हैं और एक आदमी देख रहे हैं जिस अखबार लेकर के पढ़ रहा है।

इस तस्वीर के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे आदमी औरत महिलायें पुरुष व बच्चे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर के अंदर में हमें तीन मूर्तियां दिखाई दे रही हैं जो रंग-बिरंगी कलर की हैं और पीछे खुला आसमान दिखाई दे रहा है ।

इस तस्वीर के अंदर हम तीन बच्चे देख सकते हैं जो की नृत्य कर रहे हैं और पीछे पर्दा लगा हुआ है जो काले कलर का है और नीले कलर की लाइट भी जल रही है।